एक बड़ा सा घर बना हुआ है बड़ा सा बिल्डिंग है जिसमें काफी सारे होर्डिंग्स पोस्टर लगे हुए हैं पास में एक बस खड़ी हुई है सामने एक सीढ़ी दिख रही है जिसमें जिसके बगल में एक जनरेटर रखा हुआ है।

पीछे बैकग्राउंड में आसमान दिख रहा है एंड नीम का पेड़ दिख रहा है पावर सप्लाइ की केबल्स दिख रही हैं।

फोटो एक हिली एरिया का लग रहा है जहां पे लाइटिंग के लिए खंभे लगे हुए हैं एण्ड पास में ही लोहे की रैलिंग्स बनी हुई है और --